बहोत सारा पानी दिख रहा है।

हमको बहोत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं।

हमें एक व्हाइट कलर की इमारत दिख रही है।

और इसके अंदर सामने एक कत्थई कलर का दरवाज़ा भी है।

उसमें गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं।

कुछ कबाड़ का आइटम दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक इमारत दिख रही है।

बैनर दिख रहा है।

जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भारतीय डाक का बैनर है।

इस चित्र के अंदर हमें बहुत सारी कुर्सियां दिख रही हैं।

सामने एक स्टेज सजा हुआ है।

आसपास बहुत ख़ूबसूरत घास का--

एक ब्लैक कलर की प्लेट दिख रही हे ।

कुछ खाने का आइटम रखा हुआ हे ।

सामने एक टी _वी भी चलता हुआ दिख रहा हे ।

उसके ऊपर लिखा हैसाहिब बंदगी।

और दूसरे किसिम के पोधे भी दिख रहे हें ।

एक सड़क दिख रही हे ।

खुदबे का मेंबर भी सजा हुआ हे ।

एक कैरट रखी हुई दिख रही हे ।

एक बाल्टी रखी हुई दिख रही हे ।

घर के बाहर एक दुकान भी हे ।

जिसके पास एक पेड़ भी लगा हुआ दिख रहा है।

ए_सी का कूलर भी लगा हुआ है.

सामने जाली भी लगी हुई है.

इस चित्र के अंदर एक बहुत खूबसूरत इमारत दिख रही है.

येलो और ग्रीन कलर के पौधे भी हैं.

और सबकी मैट का कलर अलग-अलग है।